यहाँ पर एक वर्ल्ड वेड वाटर पार्क की ओपनिंग की गयी है ।

इस वाटर पार्क को सुन्दर गुब्बारों से सजाया गया है । पीले और लाल गुब्बारों --

ये है पक्षी देखने मे सुन्दर और लम्बी पूँछ वाला है।

यहाँ पर एक बहुत बड़ा खुला मैदान है इस खुले मैदान में कुछ घोड़ घोड़े हैं।